ये एक कार एक घर के अंदर खड़ी जिनका कलर व्हाइट है और एक अह पास में किचन है।

कोई फंक्शन चल रहा है जिसके अंदर ऊपर गुब्बारे लगए हुए है जिनका कलर ब्लू व्हाइट पिंक है और सामने स्टेज --

दोनों कारें धो रहा है जिसकी शर्ट का कलर नीला है पैंट का कलर काला है उसके हाथ में पानी का एक पाइप दिखाई दे रहा है।

और एक का वाइट है और उसके पास एक आदमी खड़ा है जिसकी शर्ट का कलर ब्लैक है।

एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जिसके बाहर एक जीप खड़ी है एक मोटरसाइकिल खड़ी है मोटरसाइकिल का कलर काला आसमान का कलर सफेद है पेड़ का कलर हरा है।

एक ऑफिस दिखाई दे रहा है ऑफिस में कुछ कुर्सियां दिखाई दे रही है जिनका कलर काला है और एक आदमी बैठा है जिसकी शर्ट का कलर व्हाइट है एक बैग पड़ा है जिसका --

काउंटर पे एक पड़ा है काउंटर के अंदर कु--

लिया हुआ है पास में कुछ बच्चे दौड़ लगा रहे और रेड कलर की मिट्टी दिख रही है कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहें --